जहां पर हरे हरा कुछ उग रहा है और बीच में एक कट्टा भी लगा हुआ है एक डंडे में पीछे की ओर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर दो बड़े बड़े पिलर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक रोड की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे ऑटो वगैरा दिखाई दे रहे हैं।

जो कि अलग अलग प्रकार के फूल पौधे वगैरा लेके बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

जैसे कि केला अंगूर अनार संतरा कीवी।